गार्डन है जिसमे पेड़ पौधे है बहुत सारे सड़क है मैदान है एक लड़के है एक कुर्शी है चेयर है --

बड़ी सी पर्वत है जिसमे लाल की झंडा लगा है चट्टाने है निचे बस्तिया है सहर है पेड़ पौधे है।

पानी बोहोत गेहरा लग रहै हैं।

पुतले को टांगे हुए है रंग बिरंगे कपडे है।

निरमा है साबुन है खाने पीने की चॉक्लेट्स है।

गाड़ी है कुर्सी है स्टेट बैंक मशीन है एटीएम मशीन है कैमरा है लाइट है।